ये रंग बिलंगे कलर से पुती हुई है और यहां पर एक आंटी खड़ी हुई है जो ग्रीन कलर की साड़ी प- एक अंकल भी खड़े हुए है जो वाइट कलर की चेक्स वाली शर्ट पहने है एक छोटी-सी लड़की खड़ी है जो ब्लू कलर के कपड़े पहने----

कलर के कपडे पहन रखे हैं और आस-पास बहुत सारी अंटी खड़ी हुई हैं। कुछ बैठी हुई हैं जिन्होंने रंग-बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं।

यह एयरटेल फोर जी वोडाफोन कंपनी । यहाँ पर बैलेंस मतलब बैलेंस डालता होगा और मोबाइल और मोबाइल का सामान मिलता होगा क्योंकि यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिस पर ओ एयरटेल फोर जी लिखा हुआ है। यह बोर्ड रेड कलर का है।